वहाँ यूनियन बैंक है भैय्या सामने लोग कुछ बैठे हैं एटीएम है | यहाँ कुछ लोग पैसा निकाल रहे हैं कुछ लोग डाल रहे हैं।

घर साफ सुथरा रही तो सब को साफ सुथरा रही वातावरण शुद्ध रही भईया आपने आस पास की सफाई करे के चाही भईया।

बच्चों का खिलौना भईया जो ऊपर से नीचे जाके सरकत हव। पेड़-पौधे बहुत सुन्दर बा ऊपर से नीचे जात ह लोग बड़े लोगन के सिखावत हवन।